यह लेगपीस है जो ये चार लेगपीस हैं जिनके ऊपर स्लिवर कॉइन के --

यह एक सैन्ट्रो ब्लैक कलर की गाड़ी है जिसके पास एक बन्दा है जिसके पेंट का कलर ब्लू है। शर्ट का येलो है।

यह एक एप्पल है जो बहोत सारे सेव हैं और चीकू हैं और एक तराजू है जिसके बीच में एक डंडा खड़ा हुआ है। लाल-लाल सेव हैं।

और बोहोत ही बड़ा महल है। जिस पे कि चारमीनार पे एक महल और है और उसके वगल में एक खम्भा है।